हेलो गाइस आप देख सकते है ये रामगढ़ स्टेशन है यलो स्टेशन बहुत ही बड़ा है और इसमें ये भाई साब पानी दे रहा हैं पानी का बोटल बीसलरी देख सकते है सबको--

हेलो गाइस देख सकते है ये बस स्टेशन है काफी बड़ा बस स्टेशन है यहाँ पे चारो तरफ आदमी लोग खड़ा है देख सकते है।

देख सकते है काफी बड़ा ग्रील वगैरा है और यहाँ का भी व्यू बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को और

बहुत ही सारे फूल वगेरा दिया हुआ है और ये भाई साब बैठा हुआ है कुर्सी पे इधर से एक और ये भाई साब उधर से आ रहे है।

और यहाँ पे चारो साइड पेड़ वेगेरा है और लाइट वगेरा खम्बे में लगा दिया है।